सबसे ऊपा ऑरेंज उसके नीचे वाइट और सबसे नीचे ग्रीन --

यहां एक होलसेल दुकान है जिसका नाम बजेट बाजार है जो कि--

और इसके अंदर एक महिमा प्रिंटिंग कुछ है

यह एक हॉस्पिटल का रूम है यहां पे एक ब्लू कलर का बेड लगा हुआ है।

और सन ग्लास और हाथ में फोन लेकर खड़ा है।

यह एक महात्मा गांधी डेंड्रा यूनिवर्सिटी बिहार का है यहां सामने बहुत सारे बिल्डिंग है।

कान का काउंटर आगे तीन बैठने वाले स्टूल रखे हुए हैं जो कि लाल कलर के हैं ऊपर पंखा चल रहा--

बगल में बहुत सारे मिठाई है मिठाई के डब्बे है ब्रेड है पानी है कोल्ड ड्रिंक्स है।

आगे ओ साइड लड़की सब बैठी हुई है इस साइड लड़का सब बैठा हुआ है फर्स्ट वाले बेंच --